टोटो है जो की इलेक्ट्रिक से चलती है चार्ज होके और अ पीछे में बोहोत सारे बाइक हैं।

और यह स्वच्छ रखता है वातावरण को।

और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं‌ और नीचे तो बहोत पहाड़ी एरिया है पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं।

और यह डिजाइन तो बहोत ही खास है बहोत ही दूरो-दूरो से लोग आते हैं यहां पे जो भी यहां पूजा करते हैं उसका मानोकामना हमेशा पूर्ण होता है।